कुछ सब्जियां बोरों में भी रखी हुई हैं।

पैंपर डाइपर्स के पैकेट टंग रहे हैं। निशा मेहंदी के पैकेट्स हैं।

एक आदमी उसका इलाज कर रहा है। उसे मशीन लगा रहा है।